यह एक पार्किंग एरिया हैं।

यह गणेश उत्सव के तस्वीर है।

आगे एक टोल गेट है।

यह एक घर की तस्वीर है।

बाहर एक लड़का झाड़ू लगा रहा है।

यह एक खेल का मैदान है।

यह एक रेल्वे ट्रैक की फोटो है।

जहां संसारपुर का बोर्ड लगा है।

यह एक शॉप की तस्वीर है।

नीचे सब्र सा का लिखा है।

यह एक होटल की तस्वीर है।

यहां एक घर बन रहा है।

यह एक क्लास की तस्वीर है।

जहां बहोत सारा शामान रखा हुआ है।

जहां निवार का बोर्ड लगा हैं।